ये स्टेशनरी शॉप है यहां पर केचप सिरप ऑइल साबुन --

और ये लोग है और बाकी सभी बच्ची स्टूडेंट्स है ना देख रही हैं।